यह तस्वीर किसी सरकारी--

के अंदर है या फिर सरकारी हॉस्पिटल क्लिनिक का दिखाई पड़ रहा है सामने जैसा की लिखा देख सकते है बिहार लोक--

ईमारत काफी बड़ा दिखाई पड़ रहा है जोकि शायद कोई स्कूल हो सकता है।

कई सारी तरह के एक्ससाइज कर सकते हैं इस तस्वीर में हमें और भी कई सारे उपकरन दिखाय दे रहे हैं ।

एक्सरसाइज करते है। काफी अच्छा जिम दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर किसी जिम का दिखाई पड़ता है जहाँ कई सारे उपकरण है जिनका उपयोग शरीर का एक्सरसाइज करने में किया जाता है।

यह एक अ तस्वीर में जो दिख रहा है वो एक लेबोरेटरी है इसका नाम वंदना डायग्नोस्टिक सेंटर है।